ये कोई ए_सी की ट्रेन है जिसमें सेंट्रल रेलवे लिखा हुआ है जिसमें एक लेडिज उतरते हुए दिख रही है।

बहुत सारे फूल्स हैं पेड़ हैं फ्लावर्स हैं बहुत सारे गमले लटके हुए हैं ऊपर रेड कलर ब्लू कलर ग्रीन कलर पिंक कलर लाइट डार्क ग्रीन कलर --

एक पथरा टाइप पत्थर है बड़ा सा एकदम ब्लू कलर का दीवार है उसके ऊपर कट्टे टंगे हुए हैं साइड में--

एक आते हुए एक जाते हुए दिखाई दे रही है एक ब्ल्यू एक पर्पल एक लाइट पर्पल में गाड़ी दिखाई जाते हुए दिख रही है।

ये कोई नर्सरी फार्म दिखाई दे रहा है जिसमें बहोत सारे पेड़ लगे हैं छोटे छोटे छोटे काफी छोटे पेड़ हैं।